बस का गेट खुला हुआ है और एक और अंकल जी खड़े हुए है पास में वह पीछे से दिख रहा है।

पिक्चर में एक लड़का दिख रहा है जो व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए है और ब्लैक कलर और व्हाइट कलर की एक बाउंड्री सी दिख रही है।

ऊपर पंखा लगा हुआ है वह व्हाइट कलर का है और एक मिरर लगा हुआ है।

कुछ लोग बैठे हुए है वह कुछ लोग है खड़े हुए है और एक अंकल जी सर पे टोपी लगाए हुए है।

एक डार्क ब्लू कलर की टी-शर्ट पहने हुए हैं एक व्हाइट से कलर की टी-शर्ट पहने हुए हैंऔर वे हाथ मिला रहे हैं।

एक लड़का है वे जिम मे है और नीचे एक रेड और ब्लैक कलर का कारपेट हैऔर कुछ मशीन रखी हुई है जिनपे येलो कलर का पैन्ट है।

और येलो कलर का मशीन ऊपर पेंट दिख रहा है और ऊपर एक लाइट जल रही है जो व्हाइट कलर की--

पिचर में एक घर दिख रहा है जिस पर व्हाइट कलर का पेंट है तो घर थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है।